और साइड में पेड़ पौधे थोड़ी लकड़िएँ भी लगीं हुई है ऊधर पीछे देखूंगी तो जंगल दिखाई दे रहा है ।

एक पेड़ भी लगा हुआ है पर पेड़ ऊपर पत्ते होगी नीचे से लकड़ी उसकी नज़र आ रही है बिल्कुल सामने देखेंगे तो तीन शटर हैं और बिल्डिंग है जो बिल्डिंग पुती हुई है अ येल्लो कलर से।

लकड़ी के उधर भी लकड़ी है बीच में देखूंगी तो चैनल गेट है यह शायद कोई ग्राउंड वगैरा है या स्कूल है येलो कलर का पोता है उसमें लड़कियां औरतें बनी हुई है इधर से रास्ता निकल कर जा रहा है।